यहाँ पर डक वगेरा है। पानी वगेरा भी है। पत्थर नजर आ रहा है। पीछे काफी हरे-भरे पेड़-पौधे हैं।

कुछ लोग भी खड़े हैं।

जो दीवाल पे कुछ बता रहा है वो लाल रंग का शर्ट पहने हुआ है।

ये जानवरों को रखने के लिए जो खटाल बनता है अक्सर गाय-भैसों को रखने के लिए जो जगह होती है उसको खटाल बोलते हैं।